यह तस्वीर में हम एक कॉफी को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम एक नीले रंग के कार को देख सकते हैं।

ये छवि में हम एक बेड को देख सकते है।

दिखाई जाने वाले दृश्य में हम एक खुले आसमान को देख सकते है।

यह पिक्चर में हमें बहोत से मनुष्य बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

दिखाए जाने वाले दृश्य में हमें मकाने नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर में हम एक बैग रखा हुआ देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हम एक महिला को बैठे हुए देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हम साइकिल की परछाई को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें रेल की पटरियां नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक मिठाई का दुकान नजर आ रहा है।

दिखाई जानी वाली छवि में हमें यह एक मनुष्य नजर आ रहा है।